वो मशीन बहोत बड़ी है जो सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है ओर सामने की तरफ भी कुछ सामान रखा हुआ है और एक खिड़की बनी है जिसमें चोकलेटी कलर --

वह छोटे से बड़े बच्चों तक के कपड़े भी दिखाई दे रहें हैं कपड़े की दुकान में ऊपर और नीचे दो ही तरफ कपड़े टंगे हुए हैं।

और उसके सामने एक छोटा सा पौधा लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक ईट की बाउंड्री बनी है जहाँ पर कुछ घास्स दिखाई दे रही है और एक और --